इस इमेज में एक ऑफिस दिखाई दे रहा है सामने कुर्सी टेबल रखे हुए है।

इस इमेज में फिश मार्केट दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग मछली खरीद रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर बिल्डिंग दिखाई दे रही है बाहर कुछ पौधों में कुछ फूल नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में बुद्ध भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है नीचे लड़का खड़ा नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर मछली दिखाई दे रही है ऊपर लाइट जलती नजर आ रही है।

इस इमेज में मकान बनता दिखाई दे रहा हैं सामने एक आदमी बैग टांगे नजर आ रहा हैं।

इस इमेज में यहां पर पहाड़ दिखाई दे रहा है और एक आदमी खड़ा नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर फलों की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर कुछ फ्रूटे नज़र आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर बिल्डिंग नजर आ रही है और यहां पर दो लोग खड़े दिख रहे हैं।

इस इमेज में इमारत दिखाई दे रही है यहां पर बिजली के तार नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर गेट दिखाई दे रहा है जो कि बंद है नीचे पत्थर नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर मंदिर दिखाई दे रहा है बाहर कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक रूम दिखाई दे रहा है जहां पर बेड नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर थाली में नास्ता नजर आ रहा है और चटनी भी रखी हुई है।

इस इमेज में यहां पर कॉफी शॉप दिखाई दे रहा है और कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर होटल दिखाई दे रहा है और फ्रिज बॉटल नजर आ रही है।

इस इमेज में भीड़ नजर आ रही है और कुछ लोग कतारो में खड़े दिख रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर ऑफिस दिखाई दे रहा है कुछ लोग काम करते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर नदी दिखाई दे रही है और कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक होटल दिखाई दे रहा है जहां पर खाने का मेनू नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने सेनीटाइजर की बोटल दिखाई दे रही है और डिस्पोजल नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर गेट दिखाई दे रहा है नीचे कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक मन्दिर दिखाई दे रहा है और पेड़ नजर आ रहे हैं।